यह तस्वीर पूजा घर की है यहाॅं पर काली माँ की पूजा हो रही है छोटा सा एक बाल गोपाल भी नज़र आ रहा है हमें लाल रंग से रंगी हुई है ये रूम ।

बंजर जमीन नजर आ रही है लाइटे नजर आ रही है रोड की और बाईं और से हमें एक हरियाली जंगल नजर आ रहा है।

यह एक स्टेशन का द्रश्य है चारो और आसमान पिला नजर आ रहा है सूरज डूब रहा है।

यह तस्वीर इस गाँव की जहाँ पे बहोत ही बड़ा सा हरे घासों वाला मैदान नजर आ रहा है चारो और पेर पौधे नजर आ रहे है बच्चा साइकल चला रहा है कुछ बच्चे --